आ चढ़ी हुई हैं जिसमे की गुलाब की है गेंदे की है और उधर पीले गुलाब की है और ऊपर देखिए ऊपर भी रंग बिरंगे--

और देखिए यहाँ पर एक आदमी जो की कुर्सी पर बैठा हुआ है इधर देखिए कुछ लड़के खड़े हुए हैं और जिन्होंने टी शर्ट शर्ट पहनी हुई है।

नीचे अ बहुत डिजाइनरदार खंबे लगे हुए हैं दो द्वार पे और यहाँ पर देखिये दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी हुई है जो की काले रंग की है।

और यहाँ पर देखिए कुछ लकड़ी के अ बैठने के लिए कटे हुए बने हुए है और ओ बगल में देखिए गमला भी रखा गया है।